फर्श पे में और एक बगल में स्टैंड है स्टैंड लगता हे टी_वी का है वो.

लगता दुर्गा पूजा का मोहोल है डिस्प्ले भी लगाया गया है.

मैदान मे एक स्ट्रीट लाइट बड़ा सा लगा हुआ है पीछे बोहोत सारे हरे हरे पेड़ है.

एक काला सिंटेक्स रखा हुआ है.

बगल में एक दो दरवाजा लगा हुआ है सामने मे दो खिड़की है ब्लैक कलर का दिख रहा हैऔर फर्श में मेट बिछा हुआ है ग्रीन कलर का--

एक सरकारी संस्था है जहां पे दो ऐ_सी लगा हुआ है.

उसमे वॉक करने के लिए स्टे बने हुए हैं.

घर को क्रीम कलर से पेंट किया हुआ है उसकी पट्टी को हरे हरे रंग से किया गया है.

कमरे में एक मॉनिटर लगा हुआ है एक पेटीएम का स्कैनर भी लगा हुआ है.

एक टीचर के बर्थडे के लिए भी एक रेड कलर का कुर्सी और एक व्हाइट टेबल हैं.

में ओर मजदूर कंक्रीट को छान रहा --

और बगल मे ही मिर्ची रखी हुई हे हरी हरी.

और बगल में भिंडी भी हैं हरी हरी और कुछ प्याज रखें --

जहां पे कुछ गाड़ियां लगी हुई है एक टेंपो भी लगा हुआ है.

एक आदमी के हाथ में हेलमेट है उसके पीठ में एक ऑरेंज कलर का बैग है.

सर्विस सेंटर में कुछ बाइक लगे हुए हैं कुछ आदमी बाइक के सर्विसिंग करा रहे --

एक ब्लैक कलर का भी थैला है साइड में कुछ पेप्सी के खाली बोतल रखे हुए हैं.

एक शोकेस में पूरा केक और पेस्ट्री लगा हुआ है एक कुर्सी लगा हुआ.

दो-तीन टेबल लगे हुए हे टेबल के ऊपर मे सारा सामान रखा हुआ हे.

एक मेम हैं जो वाइट कलर का पूरा ड्रेस पेहनी है.

इसका नाम भाटिया साइकिल स्टोर है.

बैंक में चार-पांच आदमी खड़े हैं और चार-पांच महिलाएं भी है.

बैंक की तरफ जा रही है बैंक में चार-पांच सीडीया भी है.

और कॉर्नर मे नो पार्किंग का एक बोर्ड भी लगा हुआ हे.

रेस्टोरेंट में पांच सात टेबल लगे हुए हैं.

एक आदमी ब्लैक कलर का शर्ट पहने हुए है.